यहां क्यारी के पास में बैठने की एक बेंच भी लगी है तथा एक हरे कलर का डस्टबिन भी रखा हुआ है।

एक जिम दिखाई दे रही है यह जिम एक तीन मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित है।

पार्क के फुटपाथ पर एक व्यक्ति चलता हुआ नज़र आ रहा है।

यहां बैठने की व्यवस्था की गई है।

यहां पे लोगो के यात्रियों के बैठने के लिए कुछ बेंचे भी लगी हुई है।

पत्ता गोभी एक प्रकार की हरी सब्जी है।

कुछ सैलानी यहां पैदल घूमते नजर आ रहे हैं।

गलता के वनपाल नाका का है यह जयपुर में स्थित है।

किसी कॉलेज की इमारत का है इस इमारत के बाहर एक गार्डन भी बना है।

पिक्चर में दिखाया गया दृश्य किसी मेकअप एंड ब्यूटी सैलून का है।

पिक्चर में दिखाया गया दृश्य राजस्थान आवासन मंडल का है।

पंडित कुल्फी नाम की शॉप का यहां एक होर्डिंग भी लगा नजर आ रहा है।